सा बड़ा मैदान है। मैदान में पेड़ है। पेड़ के पास बहुत सी औरतें --

कईं गमले रखे हुए हैं।

चार पहिया गाड़ी रखी हुई है | एक मोटरसाइकिल रखी है और कुछ लोग चलते हुए जा रहे हैं ।